यह एक दुकान है दुकान में बहुत सारा लाइट जल रहा है।

रोड पर बहुत सारा टाइल्स लगाया हुआ है।

पार्क में बहुत सारा फूल भी लगाया हुआ है।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

यह एक बहुत बड़ा होटल है।

टेबल में बोतल रखा हुआ है।

बहुत सारा घर भी दिखाई दे रहा है।

यह एक बहुत बड़ा पार्क है।

यह एक बहुत बड़ा पंडाल है।

फूल का कलर लाल कलर का है।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

यह एक बहुत बड़ा फील्ड है।

एक घड़ी भी लगाया हुआ है।

आसमान में वाइट कलर का बादल दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा घास पोवरा भी रखा हुआ है।

दुकान का कलर वाइट रंग से पेंट किया हुआ है।

यहां बहुत सारे बच्चे डांस कर रहे हैं।

रोड के ऊपर एक ओवर ब्रिज बनाया हुआ है।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

पाइप का कलर पीला रंग का दिखाई दे रहा है।

बोल का कलर वाइट रंग का है।

शोरूम में बहुत सारा गाड़ी रखा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा क्यारी है।

कुर्सी भी लगाया हुआ है।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

लाइट भी जल रहे हैं जो सफेद कलर का है।

यह एक मंदिर है मंदिर में बहुत सारा डिजाइन किया हुआ है।

आसमान में नीला कलर का बादल दिखाई दे रहा है।

घर में पंखा भी लगाया हुआ है।

बस का नाम आर_के ट्रैवल्स लिखा हुआ है।

और बहुत सारा टाइल्स भी लगाया हुआ है।